सीमिक एक फार्म दिखाई दे रही है।

ये दिन का समय है।

औरत को लाल रंग की साड़ी पहनाया गया है।

दीवार में पेंटिंग बनाया हुआ है।

इस दुकान के में बहोत सारे लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

पार्क में बहोत ही हरियाली दिखाई गई है।

दृश्य में एक एयरपोर्ट की बाहर हिस्सा दिखाई गई है।

दृश्य में एक बहोत बड़ी बिल दिखाई गई है।

के बहुत दूर पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग जमा हो रखा है।

दृश्य में एक मंदिर दिखाई गई है।

ने के चारों तरफ तस्वीरे लगाई हुई है।

दिश्य में एक नदी दिखाई गई है।

दृश्य में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

गाड़ियों के बीच में बहुत सारे लोग भी हैं।

दृश्य में एक रास्ता दिखाइए गई है।

दृश्य में एक पहाड़ी एलेका दिखाया गया है।

ये दिन का समय है।

दृश्य में एक पुलिस स्टेशन दिखाई गई है।

पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी भी रुकी हुई है।